पे दो लड़के हैं जो जिसमें से एक हैं जो पानी में रेड कलर का टी-शर्ट पहन के नीचे हैं और एक ऊपर खड़े हैं वाइट --

बगल में फोर्स मारने वाला पानी है और ये अपने फोन से अपना पिक्चर क्लिक कर रहा--

एक आदमी है जोकि अपने माथा पे कुछ पलाई वगैरा लेके अंदर की तरफ जा रहा और वो रेड कलर औ और ब्लैक कलर का गमछा डाला हुआ है।

और उसके बगल में एक आसमानी कलर का आ वो दिख रहा है शटर ।

हैं जो कि ई येल्लो कलर का टी-शर्ट पहनी और ब्लैक कलर का नाइट पैंट पहनी हुई हैं और उसके पीछे अनेकों लड़के हैं जो कि अ--

और गमला वगैरह रखा हुआ है बगल में पौधे लगायें हुए है और यहां पे एक आदमी है जो कि व्हाइट --

भिया भिया और पेड़ है एक अ बगल में पेड़ खड़ा है।

यहां पे एक पावरट्रैक कंपनी का ट्रैक्टर लगा हुआ है जिसपे ग्रीन अ जिसपे ग्रीन कलर का तिरपाल लगे हुई है और यह--

घर के आगे वो गुलाबी कलर का घर घर जो है उसके आगे एक पोल है और यो वाइट कलर का पत्थर से कुछ ब --

एक पूल है जिसके अंदर पानी उम्म लगा हुआ है और अनेकों पौधे हैं उस साइड में--

पेड़ है ऊपर आसमान दिख रहा है अनेको पेड़ भी दिख रहे हैं उस साइड दो-दो घर दिख रहे हैं और इधर भी घर दिख रहे है।

यह ग्राउंड है जिसमें हरा भरा घास दिख रहा है और तीन तीन लड़के है इसमें।